libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि कैसे
एक report बनाएँ report fields को चुनें label करें और क्रमबद्ध यानि sort करें
report लेआउट चुनें और report प्रकार चुनें:static या dynamic
इसके लिए चलिए अपने परिचित उदाहरण database को देखते हैं
यहाँ हमने इस library database में पुस्तकों और सदस्यों की जानकारी संचित की है
हमारे पास सदस्यों को जारी की गयी पुस्तकों का पता लगाने के लिए एक सूची भी है
हम पिछले tutorials में सीख चुके हैं कि कैसे forms और queries बनाएँ
यह सीखने से पहले कि report कैसे बनाएँ पहले सीखते हैं कि report क्या है
report query की तरह ही database से जानकारी पता करने का अन्य तरीका है
हम इसका लेआउट रूप अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं जिससे कि यह पढने में और कागज़ पर print के लिए सरल हो
reports databases की tables और queries से बना सकते हैं
साथ ही यह table या query की सारी fields या fields के कुछ चुनित समूह को सम्मिलित कर सकते हैं
reports के दो वर्ग होते हैंstatic या dynamic
जब भी देखने के लिए एक static report को खोलते हैं
वह हमेशा वही data दर्शाता है जोकि report बनाते समय उसमें था
इसे snapshot भी कहते हैं
किन्तु dynamic report जब भी देखने के लिए खोली जाती है हमेशा database का वर्तमान data दर्शाती है
ठीक है अब एक उदाहरण report बनाते हैं
library database में
बाएँ panel पर reports icon पर click करते हैं
दायें panel पर use wizard to create report पर click करते हैं
यह reports बनाने का एक सरल और तेज़ तरीका है
हम अब एक नई window देखते हैं जिसे report builder window भी कहते हैं
और हम एक wizard देखते हैं जिसके बायीं तरफ 6 steps लिखे हुए हैं
हम पिछले tutorial में बनाई गयी query पर आधारित एक report बनाने के लिए wizard पर जाएँगे
history of books issued to the library members
हम step 1field selection पर हैं
हम report data का स्रोत यहाँ उल्लिखित करेंगे: या तो एक table या एक query
drop down list में सबसे उपर अपनी query: history of books issued to members चुनते हैं
अब बायीं तरफ query में से उपलब्ध fields की एक सूची देखते हैं
हम अपनी report में सारी fields चाहते हैं अतः केवल दायीं तरफ के double arrow button पर click करेंगे
अब अगले step पर जाने के लिए next button पर click करते हैं
step 2 labelling fields
label text boxes में निम्न विवरणात्मक labels type करते हैं जैसा चित्र में दर्शाया गया है
ठीक है अब next button पर click करते हैं
हम step 3grouping पर हैं
यह तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें चुनित fields के set द्वारा data को समूहीकृत करने की आवश्यकता होती है
उदाहरणस्वरूप हमारी report में हम data को book titles से समूहीकृत कर सकते हैं
यदि हम यह करते हैं तब हमारी report में हम book title देखते हैं और फिर सारे सदस्य जिनको यह दी गयी है
फिर हम अगली book title देखते हैं और इसी प्रकार से
अभी के लिए चलिए अपनी report को सरल रखते हैं
अतः हम केवल next button पर click करेंगे
अब हम step 4 पर हैंsorting options
चलिए data को दिनाँक के अनुसार sort करते हैं
और फिर उनको book title के जरिये आरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हैं
इसके लिए हम sort by ड्रॉपडाउन box पर click करेंगे
और फिर issue date पर click करते हैं
फिर हम दूसरे ड्रॉपडाउन box पर click करेंगे
और फिर book title पर click करते हैं
अब चलिए next button पर click करते हैं
ठीक है step 5 choose layout
हम यहाँ report का रूप अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं
चलिए columnar singlecolumn लेआउट list पर click करते हैं
ध्यान दीजिये कि पीछे report builder refreshed हो गया है
यह सारे labels को बायीं तरफ और अनरूपी fields को दायीं तरफ दर्शा रहा है
चलिए columnar two columns पर click करते हैं
फिर से नीचे की window दो column लेआउट दर्शाने के लिए refreshed हो गई है
इस प्रकार से हम कोई भी लेआउट्स चुन सकते हैं जो base wizard उपलब्ध कराता है
हम इसे बाद में अपनी आवश्यकतानुसार बदल भी सकते हैं
अभी के लिए हम पहली चीज़ tabular पर click करेंगे
और next button पर click करते हैं
ठीक है अंतिम stepcreate report
यहाँ अपनी report को एक विवरणात्मक शीर्षक देते हैं: books issued to members: report history
अब अपनी report बनाते हैं जिससे कि report हमेशा database से now data दे
इसके लिए dynamic report विकल्प पर click करें
चूँकि जब भी हम देखने के लिए report खोलेंगे हम हमेशा नया data देखना पसंद करेंगे
ठीक है हमने अपनी report समाप्त कर ली चलिए अब create report now विकल्प पर click करते हैं
और अंततः finish button पर click करें
अब हम एक now window देखते हैं और यह report है जिसे हमने अभी बनाया है
ध्यान दीजिये इसमें सबसे ऊपर bold अक्षरों में field labels हैं और असल data सारणीबद्ध तरह से दर्ज है
साथ में यह भी ध्यान दीजिये कि यह issue date field के जरिये आरोही क्रम में क्रमबद्ध है अर्थात दिनांक के अनुसार और फिर book title के अनुसार आरोही क्रम में
अतः हमने library के सदस्यों को जारी की गई पुस्तकों की report दिनाँक के अनुसार बना ली है
अगले tutorial में हम सीखेंगे कि अपनी report में कैसे बदलाव करें
यहाँ एक नियत कार्य है:
library में सभी पुस्तकों की एक report बनाइए जोकि publishers द्वारा समूहीकृत हों
दोनों ही publishers और book titles को आरोही क्रम में होना आवश्यक है
columnar singlecolumn लेआउट का इस्तेमाल करिये
इसी के साथ हम libreoffice base पर reports के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा की कैसे:
एक रिपोर्ट बनाएँ
रिपोर्ट फील्ड्स को चुनें लेबल और क्रमबद्ध करें
रिपोर्ट लेआउट को चुनें
और रिपोर्ट टाइप static या dynamic चुनें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
यह project